दिखाई दे रही है। टी.वी. दिखाई दे रही है। लाईट दिखाई दे रही है।

लोहे के सरिये दिखाई दे रहे हैं। एक गाड़ी दिखाई दे रही ठेला दिखाई दे रहा कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

लोहे की रॉड दिखाई दे रही हैं इसपे व्हाइट कलर पुता हुआ दिखाई रहा है यैलो कलर दिखाई दे रहा।

इसमें महेशजी की एक मूर्ति दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग दिखाइ दे रहे हैं। आशमान दिखाई दे रहा --

यहाँ पे एक सड़क दिखाई दे रही है हरे-भरे पेड़-पोधे दिखाई दे रहे हैं।

काले कलर की फ़र्श दिखाई दे रही है लड़कियों ने ब्लू --

यहाँ पे एक आम का पेड़ दिखाई दे रहा है । आसमान दिखाई दे रहा है | बहुत सारे गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं । लाल और नीले कलर का मिकि माउस दिखाई दे रहा है । जिसमे नीला हरा पीला --

लाल कलर दिखाई दे रहा है | बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं । दो रोकेट दिखाई दे रहे हैं । हरे लाल और काले कलर के झंडे दिखाई दे रहे हैं । नीले और लाल कलर के --

लाईट दिखाई दे रही है। बोहोत सारी सीढियाँ दिखाई दे रही है। रेलिंग दिखाई दे रही है जिसपे सिल्वर कलर पुता हुआ है।

जो की घांस दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग दिखाई दे आसमान दिखाई दे रहा है जिसमें सफ़ेद और नीला कलर दिखाई दे रहा है।

डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर का।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

इटें दिखाई दे रही हैं। बिजली के खम्भे दिखाई दे रहे हैं। बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं। पेड़-पोधे दिखाई दे रहे --